यहां पे एक हिरण का स्टेचू बना है जो भूरे रंग का है।

सामने घर बना हुआ है जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुर्सियां पड़ी हैं यहां पे सोफा भी है।

यहां पर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं और पास में बहुत से कैलेंडर लगे हैं दुकान के अंदर बहुत सी कॉपी रखी हुई हैं।

आस पास जाल बनी हुई है जो लोहे की है हरे रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पर दर्शित लेडीज गारमेंट लिखा हुआ है।